बनाया जाता है इस जगह पे लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ आते हैं अपने कार को लेकर गेट इत्यादि बनाने के लिए और बहुत ही नामी दुकान है ये --

कोचिंग यहाँ पढ़ाई जाते हैं बच्चों को इस कोचिंग में ये काफी नामी कोचिंग सेंटर है ये दूर-दूर से बच्चे इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं।

लोग दूर-दूर से यहाँ इस मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं।